यहां छोटा सा एक मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे एक टेबल और बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

ये एक गाड़ी का शोरूम है।

और यहां पे बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं ।

ये एक तालाब का चित्र है।

यहां पे एक फ्रिज भी दिखाई दे रही है।

इसके पीछे बहोत पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसके नीचे एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

यहाँ बड़े बड़े खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।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

ये एक दुकान का चित्र है।

बहुत सारी साइकल और बाइक भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक सड़क का चित्र है ।

और एक टेबल और चेयर भी दिखाई दे रहे है।

जहां पे दो लेडीज और एक जेंस बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अमने में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मंदिर के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ।

और यहां पे बहुत पुराना सा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे कांच के खिड़कियाँ भी लगे दिखाई दे रही हैं।

और यहां पे बहुत सारे वो गुब्बारे भी लगाए गए हैं।

और यहां पे एक छोटा सा कैमरा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक छोटा सा स्पीकर भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर से ऊपर से सीलिंग में भी बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

पत्थर के ऊपर बहोत सारे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारी हरी मिर्च भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इसके नीचे बहोत सारी पत्तियां गिरी हुई भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक बड़ा सा गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है।

ये एक सड़क का चित्र है जहां पे एक पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे छोटे छोटे पोस्टर्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी गार्डन का रास्ता है।

जोकि एक लाइन से है।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

यहां पे छोटा सा एक पोस्टर भी लगा हुआ है।